की फोटो में दिखाया जा रहा है।

लेकिन सड़क में कुछ नहीं है पूरा खाली है ना एक आदमी है ना कोई नहीं कुछ भी कोई भी नहीं है वहां पे--

और ट्रेन तो नहीं है खाली है और बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेन के लिए वेट किए हैं।

लाइट्स लगा हुआ है सजाए हुए हैं ढाबे को और एक बाइक भी खड़ा है और खाली स्पेस है।

बिजली के लिए और वायर भी है साइड में--

जैसे की फोटो में दिखाया गया है।

जैसे कि फोटो में दिखाया गया है यहां पे--

जैसे की फोटो में दिखाया गया है--

यहां पे बहुत सारे पेड़ हैं।

ऑफिस है जहां पे बहोत सारे--

उसके सामने बहुत सारा पेड़ है गेट लगा हुआ है।

ब्लू कलर की बाइक खड़ी हुई है।

यहां पे पेट्रोल डीजल भी रखे हुए हैं।

फोटो में दिखाया गया है कि ये सूर्य अस्त का टाइम है और यहां पे दो बच्चे जो हैं।

बोहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

और ये टिकट काउंटर है साइड में।

बहुत सारा बाइकस खड़ी हुई है दुकान है और एक ऑटो जा रहा है और दुकान के --

एक आदमी पेट्रोल डाल रहा है।

बहुत सारा पेड़ है और पत्थर से--